इसमें दो आदमी जो है वो--

और इसमें एक पुल है जिसको रंगा हुआ है रेड ब्लैक ब्लू कलर से--

यह एक बैंक है जिस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ।

चीज का सुविधा दिया गया है।

चारों साइड से बिल्डिंग पैक है जिसे कि बच्चे ना गिरे बेंच डेस्क लगा हुआ है बच्चों के लिए।

जो की चौबीस घंटे अपनी सेवा देता है।

प्रकार की पुरानी चीज बीमारियों के चिकित्सक हेतु संपर्क करें मेन रोड मीरगंज।

मुज्जफड ओ डॉक्टर एस_के गुप्ता और डॉक्टर एस_के तिवारी द्वारा ठीक किया जाता है।

इसको शॉर्ट में के_आई_पी_एस भी बोलते हैं यह एक बहुत अच्छा विद्यालय है।

जिसे हम शेरनी कहते हैं यह एक फीमेल जानवर है।

नगर सरकार भवन मुजफ्फरपुर बिहार पटना में स्थित हैं।

यहां एक घर है जिस घर में एक बहुत अच्छा पौधा लगा है घर का खिड़की बहुत बड़ा है।

यह एक पेट्रोल पंप है जिस पेट्रोल पंप का नाम है हमारा पम्फ बैरिया।

इंग्लिश बाथरूम मिलता है और बहुत तरह का सीसा मिलता है बेसिंग मिलता बाथ टब मिलता है और इसमें एक बहुत बड़ा --